इस चित्र में हमें एक रूम दिखाई दे रही है तीन से चार औरतें दिखाई दे रही है जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है।

और औरत ने मुँह पे मास्क लगाए हुए है दीवार पर परदे लगे हुए है नीचे भगवान की रंगोली बनाई हुई है उसके ऊपर दिये लगाए हुए है।

उसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं एक ने टीशर्ट पहना हुआ है दूसरे ने बनियान पहनी हुई है और एक ने शर्ट पहना हुआ है शर्ट वाइट कलर का है।

वहां सीमेंट का कुछ काम चल रहा है यहां पर बड़े-बड़े सलाखें रखी हुई है साइड में कुछ घर दिख रहे हैं और इस साइड में खेत दिख रहा है और दो पेड़ दिख --

साइड में हमें दूसरा मंदिर दिख रहा है वह भी ऑरेंज कलर का हमें दिख रहा है एक औरत ने साड़ी पहनी हुई है जो कि रेड और येलो--

वाइट कलर का कुर्ता पेहना हुआ है जो की मूर्तियाँ जैसे बैठे हुए है नीचे।